और गुफा के बाहर कुछ घास भी नजर आ रही है।

सामने की तरफ दो स्टेच्यू खड़े हुए हैं कपड़े पहने।

यहां पे पीली कलर की बहुत सारी बस खड़ी हुई हैं।

बहुत सारा कूड़ा पड़ा हुआ है।

एक स्टूल नजर आ रहा है।

चारों तरफ दीवाल खड़ी हुई है।

चारों तरफ दीवाल बनी हुई है।

जहां पे बहोत सारी लाइट लगी हुई है।

टेबल चेयर नजर आ रही है।

बहुत सारी लाइट लगी हुई हैं।

हरे भरे पेड़ भी लगे हुए हैं।

हमें इस फोटो में योगा क्लास की दृश्य दिखाया गया है।

फूलों से दरबार सजा हुआ है।

सामने एक पिलर व्हाइट कलर का नजर आ रहा है।

गुब्बारे भी टप चिपके हुए हैं।

सामने की तरफ हरे भरे पेड़ नजर आ रहे हैं।

हमें इस फोटो में किसी होटल का दृश्य दिखाया गया है।

फूलों से सजा हुआ है।

गुलदस्ता भी रखा हुआ है।

जहां पे बहुत सारी तरह तरह की रंग बिरंगी लाइट लगी हुई हैं।

टेबल पे वॉटर बॉटल नजर आ रहे है।

पीछे के साइड शॉपिंग मॉल भी बना हुआ है।

डस्टबिन भी रखी हुई है।